ये सभी मैं देख रहा हूँ। मेरे सामने काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है जो कि इसमे चारो तरफ आ --

जो कि काफी बड़ी है और कलोरो द्वारा पूरा आ ल काटा गया है। जो कि काफी शानदार और बड़ा हॉल द्वारा बनवाया गया है।

और हमें हर प्रकार का इस दुकान पे समान मिल जाता है जो की हमें काफी इस दुकान --

जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरे स्कूल में हैं जो कि बीमार आदमी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा जो कि सोता हुआ --

और झल्लर भी लगी हुई है इसमें गुलदस्ते भी लगे हुए हैं फेन भी लगा हुआ है।

एंड जो मैं देख रहा हूँ। मेरे सामने एक होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से बनाया गया है जो कि काफी बड़ा बनाया गया है। नीचे --

छज्जे द्वारा इसमें है। ग्रील भी लगाई गयी है और --

शानदार एक ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है जो कि काफी अच्छा --

जो काफी बड़ा भी है जो भी एक है बेस कम रखा गया है। और --

काफी बड़ी ये कंपनी दिखाई दे रही है जो कि --

जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये एक कोचिंग क्लास है और --

और इस दुकान पे हर प्रकार की सोडा मिलती है। कोल्ड ड्रिंक हो गया या परचूनी का आइटम --

और पापड़ी भी है और मटर भी है। जो कि अंदर बनाते हैं। काफी भीड़ भी लगती है जो भी लोग खाने के लिए आते हैं।